कम्पू- तीन कंप्यूटर रखा हुआ है और तीन--

आसपास में की थोडा फास सुथरा बना रहे और पीछे में--

ये एक सब्जी है मार्केट है यहाँ एक औरत है और दो आदमी है और सब सब्जी बेच रहा है सब्जी में हर जगह सब्जी है।

टंगा हुआ है सब फोटो योगा से रिलेटेड और बिच में दो पेयर हुई है जो बहुत सुन्दर लग रहा है।